बेंच भी बहुत सारे हैं यहां पे एक फैन लगा हुआ है।

ये पेट्रोल पंप का लोकेशन वहां पे एक छोटा सा रूम भी जैसा पेट्रोल पंप --

व्हाइट और पिंक कलर का यहां पे वाइट कलर का भी फूल है मस्त मस्त फूल का झालर भी है।

पेड़ भी बहुत सारे हैं एक आदमी आदमी रेड कलर का बैग भी लिया हुआ--

यहां पे बहोत सारे पटरी है यहां पे क्लाउड बहुत मस्त मस्त है यहां पे--

ब्लू कलर में फ्लावर बनाए हुए हैं।

टेबल भी है यहां पे बहोत-बहोत डिजाइन भी यहां पे सामान मिलता है यहाँ पे --

यहां पे बहोत सारे स्टूडेंट है वहां पे बेंच भी है यहां पे एक व्हाइट बोर्ड भी है यहां--

वहां पे बहुत सारे चेयर लगाए हुए हैं दुकान है वहां पे इनक्रेडिबल थ्रेड्स --

वो एक शादी में गया है उसके पीछे का अंकल भी हैं वहां पे--

इसके बा अगल बगल पाउडर भी पॉन्ड्स पाउडर है एक बोतल है।

पे ए एक और दो तीन कुर्सी भी है।

इसमें एक गेट भी है इसमें पर्दा का डिजाइन भी बत ज्यादा मस्त है पिंक कलर वाइट कलर ग्रीन कलर से पूरा एकदम डेकोरेट किया हुआ है।

यह छोटे छोटे बैट बॉल भी हैं।

और बहुत सारे दुकान हैं यहां पे दो बाइक भी खड़े हैं यहां पे खिड़की भी है यहां।